c ++ में exception handling के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम exception handling सीखेंगे
हम यह एक उदाहरण की मदद से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग का रही हूँ
ubuntu os version 1110
g ++ compiler version 461
अब exception के परिचय के साथ शुरू करते हैं
exception एक समस्या है जो program के निष्पादन के समय उत्पन्न होती है
यह रनtime error है जिसका it program लगा सकता है
अब exception handling पर जाते हैं
program के निष्पादन के समय समस्याओं को the गयी अनुक्रिया को exception handling कहते हैं
exception handling निष्पादन को जारी रखने की अनुमति देता है
यह समस्या का it लगाने में मदद करता है
और नियंत्रित तरीके से program को ख़त्म करता है
अब exceptions के प्रकार देखते हैं
try catch
और throw
हम error prone code को try block के अंदर रखते हैं
फिर इसे throw उपयोग करके संचित किया जाता है
इसके बाद catch statement उपयोग करके इस exception को पकड़ा जाता है
और फिर यह संसाधित होता है
try catch और throw के लिए रचनाक्रम है
throw: try block और catch block
यहाँ हम आर्ग्यूमेंट pass करते हैं
throw statement try block के अंदर भी लिखा जा सकता है
हमारे पास एक से अधिक try catch blocks हैं
अब exception handling पर एक उदाहरण देखते हैं
मेरे पास code है मैं इसे खोलूंगी
ध्यान दें हमारा file exception cpp है
इस program में हम exception handling प्रयोग करके डिवाइड by zero error हल करेंगे
अब पूरे code को देखते हैं
यह iostream हमारी header file है
यहाँ हम std namespace उपयोग कर रहे हैं
यहाँ हमारे पास आर्ग्यूमेंट int a और int b के साथ function division है
फिर हम जांचते हैं कि b == 0 है या नहीं
यदि true है तो हम division by zero condition exception को throw करते हैं
function a और b का division returns करता है
यह हमारा main function है
इसमें हमने integer variable x y और एक double variable z घोषित किये हैं
यहाँ हम x और y की value स्वीकार करते हैं
यह हमारा try block है
यहाँ हमने function division कॉल किया है
और परिणाम को z में संचित किया है
फिर हम z की value print करते हैं
यह हमारा catch block है
इसमें हम एक argument msg character constant की तरह pass करते हैं
फिर हम msg print करते हैं
और यह हमारा return statement है
अब program निष्पादित करते हैं
अपने keyboard पर एक साथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर terminal window खोलें
compile करने के लिए type करें g ++ स्पेस exception डॉट cpp स्पेस hyphen o स्पेस ex एंटर दबाएं
type करें dot slash ex enter दबाएं
x और y की value enter करें
मैं 3 और 0 दूंगी
output प्रदर्शित होता है: division by zero condition
दोबारा compile करते हैं
अप arrow की key दो बार दबाएं
enter दबाएं दोबारा अप arrow की key दो बार दबाएं
x और y की value enter करें
मैं 8 और 2 दूंगी
output 4 है
इस प्रकार try catch और throw block कार्य करते हैं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
अब अपनी slide पर वापस आते हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने देखा exception handling try catch और throw blocks
एक नियत कार्य में कर्मचारियों की ऐज प्रदर्शित करें
एक exception throw करें यह जांचने के लिए कि ऐज 15 से कम नहीं है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
online test pass करने वालोँ को प्रमाणपत्र देते हैं
अधिक जानकारी कर लिए कृपया contact @spokentutorial org को लिखें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
इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है: